ये एक काफी बड़ी मिक्सर मशीन है जिसके आगे एक गाड़ी लगी हुई है टंकी रखी हुई है।

रखी हुई है।

एक गुफा है जिसमें एक व्यक्ति अंदर जा रहा है गुफा के अंदर अंधेरा हो रहा है बैक --

एक हॉस्पिटल है काफी सारे बेड रखे हुए हैं बेड़ो के नीचे तीन-तीन बाल्टिया हुई है।

एक कुर्सी खाली है जो लकड़ी की है टेबल पर कैंची पैन और एक रजिस्टर और गोली दवाई रखी हुई है एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

गेट बंद है अंदर एक बिल्डिंग भी है एक नाली --

एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं और काफी सारे बिल्डिंग बनी हुई है।